ये देखिये ये एक गार्डन है जहाँ पर बैठने के लिए एक टेंट जैसा बना हुआ है। और --

भारतीय स्टेट बैंक का शाखा है जहां की हम यह पैसा अकाउंट में सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक गर्वनमेंट बैंक है और --

दरभंगा का टावर है। यहाँ पर बहुत चीज मिलते हैं। यहाँ पर हर तरह के मॉल है दूकान है। जहाँ पर फुटपाथ की सब चीजे भी मी --